सामने सर खड़े हैं जो की इनहे पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इहा पर ऐ.सी. -इ लगी हुई है फन लगा कैमरा लगा हुआ साइड में दरवाजा--

उम बल्लू लगे हुए है व्हाइट एड ब्लू कलर के कुछ लोग खड़े हुए है यहाँ पर और यहाँ पर साइड में गाड़ी खड़ी हुई है एक कर है ब्लू कलर की पेड़ लगे हुए है।